इस इमेज मे हमे पानी दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा और हमे साइड मे हरी घास दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें पानी दिखाई दे रहा है और नीचे हरियाली दिखाई दे रही है और बोहोत बड़ा दो पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और ये शाम का समय है । थोड़ा-थोड़ा अंधेरा लगा हुआ है।

और हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है और हरियाली बोहोत ज्यादा दिखाई दे रही है।

और ये दोनों फूल पहने हुए हैं और शा और पीछे भी हमें लकड़ी का कुछ दिखाई दे रहा है। पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। दो आदमी बै --

इस इमेज में हमें पानी दिखाई दे रहा है और साइड में हमें पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और पत्थर से पानी गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

पीछे हमें पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं और ऊपर हमें आसमान दिखाई दे रहा है जो उजले कलर का है।

हमें इस इमेज में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और हमें ग्रीन ग्रीन घास भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें एक फूल दिखाई दे रहा है जो अ रेड कलर का है और कुछ उसमें व्हाइट क --